यहां माल को बड़े बड़े बोरों में भर रहे हैं।

यहां पे अनेक प्रकार के--

एक अध्यापक सामने खड़े होकर विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं।

सफेद कलर का लिबास पहने और गले में माला डालें --

छोटे-छोटे पत्थरों के टुकड़े भी दिखाई दे रहे हैं।

बाहर काउंटर बना हुआ है बैठने के लिए एक कुर्सी लगाई गई है।

यहां पेड़ों के बाहर एक बाउंड्री बनाई गई है।

यहां लकड़ी का बना हुआ नमूना है।

यह श्री राम में वैद्य मक्काराम कॉलोनी बीकानेर मे है।